और एक टीशर्ट दिख रहा है जिसके बगल में है जो रेड कलर का है आ --

होटल में हमें बहुत सारेएए घर वगैरह देखे जा रहे हैं जो वाइट कलर के है कुछ ब्लू कलर के है कुछ फैक्ट्रिया वगैरह देखे जा रहे हैं।

कुछ पोल बरे है इसमें इलेक्ट्रिक के तार बरे दिख रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ वगेरे --

इस फोटो में हमें एक होटल टाइप का दिख रहा है जिसमें बहुत सारे --

इस फोटो में हमें एक शॉप दिख रहा है जिसमें बहुत सारे टाइल्स वगैरा दिख रहे हैं जो वाइट कलर के हैं कुछ ग्रे कलर के कुछ हल्के ब्लू कलर के--

कोई घास वगैर दिख रहे हैं कुछ आदमी वैरा दिख रहे हैं कुछ बच्चे मैदान --

चलते हुए दिख रहे हैं कुछ बड़े बड़े पेड़ वगैरा देखे जा रहे हैं कुछ ब्लू कलर के घर वगैरा दिख रहे हैं।

साइड साइड में बाउंड्री किया हुआ है और कुछ लाइन वगैरह दिए हुए है जो वाइट अ येलो कलर से है कुछ बड़े बड़े पेड़ वगैरा भी दिख रहे हैं एक घर दिख रहा है जिसका कलर --

इस फोटो में हमें एक ब्रिज टाइप का दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे --

एै पोल दिख रहा है जो इलेक्ट्रिक का है उसमें कुछ वायर वगैरह देखे जा रहे हैं ये कार दिख रहा है।

सीढ़ी टाइप का दिख रहा है जो पूरा व्हाईट कलर का है जो लोहे का--

इस फोटो में एक इस्टोोोर टाइप का दिख रहा है जिसके बाहर काँच के अंदर में बहुत सारे डब्बे व रखे हुए हैं बहुत जार वैरा रखे हुए --

कुछ स्टाम वगैरह रखे हुए हैं जो रेड कलर का है और बाहर एक बेनर लगा हुआ है।

तलवारें दिख रहें हैं जो ब्लैक कलर के हैं ऊपर कुछ कील वगैरा दिख रहें हैं जो अ सिल्वर कलर के ल अ लोहे के हैं पीछे कुछ लगा हुवा हैं आज ऑरेंज हैं।

और कुछ घर वारा दिख रहा है कुछ एक मॉल टाइप का भी है जो --

फोडाओं में एक मेला लगा हुआ दिख रहा है जिसमें कुछ बच्चे के खेलने के खिलौने वगैरह है एक --

यो ब्लू कलर का है और उसके ऊपर कुछ झण्डे वगैरह लगे हुए हैं जो रेड है येलो कलर के है।

एक बड़ा सा पीड़ा सा देखा जा रहा है कुछ रेड चेयर वगैरह दिख रहा है जिसमें --

और ऊपर में एक बड़ा रेड कलर का बैनर है जिसमें ढाबा लिखा हुआ है जो येलो कलर से है एक आदमी--

और कुछ काँच वैरा लगे हुए हैं जो ब्लू कलर कााा ब्लू कलर के हैं ।

इस फोटो में एक बच्चा है जो हाथ में पाइप लिए हुए है जो पेड़ को प पानी देते हुए दिख रहे हैं।

बोर्ड का कलर रेड कलर का वाइट कलर का है जिसमें बोड़ाफोन लिखा हुआ है ऊपर एक और बोर्ड है जो रेड कलर का है।

अ पाइप वारा दिख रहे हैं कुछ वर्कर्स हैं जो काम करते दिख रहे हैं एक ने --

ऊपर एक वाइट कलर का पंखा दिख रहा है अंदर में एक कार है जो वाइट कलर का है।

नीचे स्टील लवारा लगा हुआ है कुछ चक्के वारे लगे हुए है कुछ --

कुछ लोहे के पाइप वगैरह लगे हुए हैं कुछ ब मशीन वगैरह दिख रहे हैं जो येलो कलर के हैं।

कुछ बड़े बड़े एल_ई_डी लाइट के खंबे वारे दिख रहे हैं।

केले रखे हुए हैं पीछे एक बॉक्स है जो प्लाई का बना हुआ है।

इस फोटो में हमें एक मिठाई का दुकान दिख रहा है जो ऊपर कांच के भीतर में बहुत सारे मिठाई भरे रखे हुए हैं जो स्टील के--

इस फोन में इस फोटो हमें एक फोन का स्टोर दिख रहा है जिसमें --

ऊपर बहुत सारे फोन व लगे हुए है जिसमें कुछ सैमसंग के फोन हैं।